चित्र में मुझे दीवारों पर पेंटिंग की हुई दिखाई दे रही है।

चित्र में मुझे सोफा का कलर अलग अलग दिखाई दे रहा है।

दिख रहा है चित्र में मुझे कई गाड़ियां खड़ी हुई दिख रही है।

चित्र में मुझे एक व्यक्ति कांच में फोटो खींचता हुआ दिख रहा है।

झे एक चित्र दिखाई दे रहा है चित्र में मुझे एक पुरानी हवेली सी बनी हुई--

नीला दिखाई दे रहा है चित्र में मुझे पेड़ हरे हरे दिख रहे हैं।

नर्सरी में मुझे कई सारे पौधे रखे हुए दिख रहे हैं चित्र में मुझे अलग-अलग प्रकार के फूल रखे हुए दिख रहे हैं।